इस चित्र में ऑफिस रूम को दिखाया गया है।

और उसके सामने एक आदमी भी है जिसने व्हाइट शर्ट और ग्रे लांग पैंट पहना हुआ है।

जहां दुकान के आगे बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है।

एक स्टार भी लगाया हुआ है और चर्च के बाहर बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं।

जहां एक औरत ने ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी हुई है।

इस पिक्चर में मंदिर को दर्शाया गया है।

जहां एक लड़के ने रेड कलर की जर्सी और ब्लैक कलर की हाफ पैंट पहना हुआ है।

जहां तरह तरह के समाने बिक रही है । उनमें से एक मैगी है।

दूसरी तरफ पिंक वॉल पर एक बड़ा सा पोस्टर है।

उनमें से एक लड़के ने रेड कलर के चेक चेक शर्ट पहनी हुई है और ब्लू कलर के लांग पैंट ।

गाड़ी को वाश कर रहा है यहां एक बूढ़े ने ब्राऊन कलर की शर्ट और ग्रे कलर का लांग पैंट हुआ है।

जहां एक बूढ़े ने वाइट शर्ट और ग्रे लॉन्ग पैंट पहना हुआ है।

और रेत है और आस पास बहुत सारे लोग हैं जहां एक लड़के ने ब्लू शर्ट और ब्लू लोअर पहना हुआ है।

चित्र में बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक येलो कलर की बिल्डिंग को दिखाया गया है।

और उसके सामने एक वाइट कलर की मिठाई भी है।

और उसके सामने बहुत सारे तरह के मिठाइयां है।

जहां दो लोगों ने रेड कलर की टी_शर्ट --

दूसरी तरफ एक लड़के ने ब्लू शर्ट और ब्लू लांग पैंट पहना हुआ है।

जहां बहुत सारे गोदरेज और टेबल पड़े हुए है। जहां गोदरेज का कलर पिंक ब्लू ब्राउन और ब्लैक है।

इस चित्र में पहाड़ों के बीच एक जगह को दिखाया गया है।

इस पिक्चर में एक गेट को दिखाया गया है जिसका कलर येल्लो रेड और वाइट है।